यह एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ मरीजे पलंग पे बैठे हैं बेड के ऊपर सोए हैं डॉक्टर दिखाई दे रहा है।

इधर भी एक लड़का खड़ा है अंदर भी कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक औरत लकड़ी लेते हुए जा रही हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं टापरी दिखाई दे रही हैं लाल कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा--

इसको नीचे पानी दिखाई दे रहा है दो से तीन स्लीपर बस है।

यह एक और शादी या किसी फंक्शंस का टेंट दिखाई दे रहा है। जहाँ पर सीरीज़ लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक हाउस दिखा रहा ये हाउस जैसा--

पेड़ पर पन्नी टंगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक लकड़ियों का फर्नीचर का गोदाम जैसा दिख रहा है।

यह एक दुकान है जो सब कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ इस दुकान दिख रही है सामान की एक लड़की दिख रही है।

और पोस्टर्स लगे हुए है खाने का दिखाई दे रहा है।

यह एक किराना शॉप है जिसमें बर्तन माजने के कूचे हैं कपड़े धोने के साबुन है।

और पुस्टर इसमें साबुन लगी हुई है फटा हुआ दिखाई दे रहा है।